यह रोड है। यहाँ पर एक आदमी सैर कर रहा हूँ।

यहाँ एक बोर्ड लगा है। उसपे माँ इंटरप्राइजेज लिखा हुआ है।

और बगल में कपड़े का दुकान है। यहाँ एक लड़की खड़ी है।